यहाँ पर एक मशीन लगाया हुआ है जो अ इसे जो लोहा से पूरा बना हुआ है दोनों तरफ मशीन लगाकर इसको बड़े-बड़े पत्थर को अम्म डाल कर पूरा उसका--

यहाँ पर एक दुकान है और उसके सामने एक फ़ॉर व्हीलर खड़ी है एक बाइक पर एक लेडीज और एक जेंट्स बैठे हुए है ।

मशीन की दुकान के सामने--